पहाड़ पूरा खुला है पूरा बाउंड्री दिया हुआ है और यहाँ पे आपको फ्री में हेल्थ चेकप भी दिया जाता है और अलग - अलग सुविधा भी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है।

कांच के अंदर बुद्धा के अलग - अलग स्टेचू रखे हुए है उसके आ उसके बाहर और कुछ दिए जला के है टेबल के ऊपर वो दिए सब सजा के रखे हुए है।